यहां मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है।

सोफा के पास में दो फ्लावर पॉट रखा हुआ है।

घर के पास में फ्लावर पौडा लगा हुआ है।

कुछ इंसान खड़े हुआ है।

घर के बाहर में अ पिलर भी लगा हुआ है।

बिल्डिंग के पास में पेड़ पौधा भी बहोत सारा है।

इस शॉप में इंडियन फ्लैग लगा हुआ है।

के अंदर पर बहुत सारा सामान है।

घर की कलर्स येलो रेड वाइट से लगा हुआ है।

यहां मुझे एक रोड भी दिखाई दे रहा है।

यहां बच्चे लोग प्रोजेक्ट की तैयारी चल रहा है।

यहां मुझे बहुत ही बरा बिल्डिंग बनते हुए नजर आ रहा है।

और यहां पे दो आदमी भी दिखाई दे रहा है।

जंगल पर बहुत सारा पेड़ पौधा लगा हुआ है।

तस्वीर में मुझे जिम दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे बहोत ही बड़ा फील्ड दिखाई दे रहा है।

वहां मुझे कुछ दो लोग भी दिखाई दे रहा है।

आस पास पेड़ पौधा भी है।

मंदिर के पीछे पर पेड़ भी दिखाई दे रहा है।